यहाँ आगे एक पर्दा टाइप में लगा है चारो साइड स्टेडियम है आदमी तो दो चार --

एक हाथो में ढोल उल ले के सभी पुरे महाउत्सव की तरह तैयारी में जा रहे हैं लग रहा है बहो --

बड़ा सा मेला जैसे दशहरा जैसे मेला का अयोजन रखा गया है | सभी यात्रियों के हाथो में ढोल है |

उस पुस्तकालय का नाम है जिसे यहाँ बहुत सारे किताब हैं लग रहा है बहुत बड़ा दुकान है |

और अनार सेब जैसे क्या प्याज उवाज सब भी मिलता है और आदमी को --

एक आदमी मोबाइल चला रहे है यहाँ से स्पष्ट नहीं देख पा रहा है की सब्जी दुकान है या फल दुकान है।

दे रहा हैजैसे लग रहा है कोई बिल्डिंग का या फिर कोई घर का नीलामी हो रहा है इस टाइप का --

प्रचलित है बिहार में बिहार के सभी आदमी इसे देवता की तरह पूजते हैं और सभी लोग उनकी पूजा करते हैं।

ये बुद्ध भगवान का फोटो है इसे बिहार में बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है ये पटना में इसकी स्थापना हुई थी और ये बहुत ही --

प्रचलित है बिहार में बिहार के सभी आदमी इसे देवता की तरह पूजते है और सभी लोग उनकी पूजा करते हैं।

लग रहा है जैसे ए.टी.एम. का प्रॉब्लम --

या फिर पाँच छै आदमी मिल के जो कि अंदर में घुस के कुछ --

और एक ग्लास साइड में कप और ग्लास मे सब्ज़ी और एक ग्लास मे दही --

बहुत ज्यादा उत्साह हो रहे हैं चारो साइड से --

बहुत ज्यादा केला बांधे हैं और ये आदमी व्यापारी करने के लिए शायद कहीं दूर जा रहे है नदी का माहौल बहुत ही अच्छा --

मुझे भी बहुत शानदार सा ही लग रहा है हो सकता है तैयार होने के बाद काफी ज्यादा शानदार हो --

एक बाइक है बाइक का पिक है और उसका सारा पार्ट पुर्जा खुला है जैसे लग रहा है कोई आदमी घर पे --